ये स्कूल है स्कूलो मे विद्या दी जाती है बच्चों को अच्छी बात है की स्कूलों मे बच्चों को विद्या दी जाती है।

यहाँ देखो कितनी बड़ी बिल्डिंग है भाई पेड़-पौधे हैं कितना अछा स्कूल है न। वेसे मुझे यह गवर्नमेंट स्कूल लग रहा है जैसे गवर्नमेंट स्कूल नहीं होते बच्चे पढ़ने जाते गवर्नमेंट स्कूल मे वही है।

जब मन उदास हो चारो तरफ ग्रीननरी हो तो मन लगता है |

कुछ खाइए पीजिए पार्क में जाइए तो बहोत (बहुत) अच्छा-सा दृश्य होता है ये।

अअ दो सौ तीन सौ रुपये तो एक भीक मांगने से तो अच्छा ही काम है | अ अपना छोटा सा सेटप उन्होंने लगाया हुआ है | टॉफियां है सब कुछ --